अच्छा पोस्टर भी लगा है घर भी पेंटिंग हुआ है शीशे की लगी है छत देखने में बहुत प्यारा दिख रहा है खूबसूरत --

अच्छा दिख रहा है ईशू मसीह का मूर्ति है देखने में क्या खूबसूरत लग रहा है पेड-़ पौधा फूल- पत्ती सब है भगवान भी बगल में है यह देखने के अच्छा मिल रही है हम लोग--

--दिखाया हुआ है अच्छा दिखने में दिख रहा है हम लोग का ऐसा पहली बार देखने के लिए मिल रहा है हम लोग देख रहे हैं आधा दिख रहा है पेंटिंग भी अच्छा हुआ--

क्युकी ऐसा दिखने में अच्छा दिखता है।

यह नदी है अच्छा दिख रहा है पुल भी है झरना भी बह रहा है।

खूबसूरत है अच्छा प्यारा हम लोग ऐसा पहली बार देख रहे है हम लोग को ऐसा देखने के लिए पहली बार मिला है।

पेंटिंग भी खूबसूरत मारते है देखने मे अच्छा दिखता है।